यह प्राइवेट स्कूल है। इस स्कूल में बहोत सारे कमरे भी हैं। यहाँ काफ़ी सारे बच्चे पढ़ते हैं। एक विद्यालय के बाहर एक मैदान है। इस मैदान में काफ़ी सारे बच्चे दरी बिछा कर बैठे गये हैं।

यहाँ पर एक कच्ची सी सड़क भी है। यहाँ बहुत सारे आदमी घूमने आते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे खेलने भी आते --

यहाँ पर काफ़ी सारे लेबर एवं मिस्त्री काम कर रहे हैं। यहाँ पर ईट का जुड़ाई हो रहा है।